एक लड़का बैठा हुआ है जो ब्लू कलर की टी शर्ट पहन कर मोबाईल चला रहा है। यहाँ बहोत सारे नोटबुक्स रखे हुए हैं पेन रखे हुए हैं।

अंक का और बहोत सारे यहाँ पे बोर्ड दिख रहे हैं। ऑटो रिक्शा दिख रहा है। बहोत सारे लोग आते जाते हुए दिख रहे हैं। एक लड़की है जो साइकिल से आ रही है।

नाव रखी हुई है साइड में न पानी के पास में नदी के पास में एक अदमी है जो ब्लू टी शर्ट पहन के खड़ा है | एक औरत है जो जिसके हाथ में --

बिस्किट फैक्ट्री की फोटो है जा पे बोहोत सारे बिस्किट बना रहे है अ और एक लड़का है जो ब्लू कंटेनर में --

ब्लू कलर की लाइट से डेकोरेशन किया हुआ है बहुत सारे आस पास पेड़ दिख रहे है लोग खड़े है।

मेडिकल स्टोर है जिसमे बहुत सारी मेडिसिन्स रखी हुई है। अलग-अलग प्रकार की सर्दी की बुखार की

और मशीन आई हुई है जो स्लैप की मशीन होती है। उससे सीमेंट निकाल के बिछाया जा रहा है बहुत सारे मजदूर हैं जो यहाँं पर काम कर रहे हैं और एक आदमी खड़ा है।

एक रीसेप्शन के बाहर की फोटो है जहाॅं पे डेकोरेशन किया हुआ है जहाॅं पे एक हस्बैंड वाइफ फोटो क्लिक करवा रहे हैं। बगल में एक स्टैचू है। एक --

और बेट करने के लिए अ बोल रहे हैं।